यहाँ पर कलरफुल डेकोरेशन है जिसमें कई प्रकार के बैलून लगे हुए हैं और कुछ --

ये एक कपड़ों की शॉप है जहां पर पायदान वगैरा और कई प्रकार के वस्त्र मिलते हैं।

एक लड़का है जो अपने स सेलफोन से बात कर रहा है और --

जिसमें एक लड़का अपने बालों की कटिंग कराने के लिए उस दुकान पर गया हुआ है।

और ये नाई इस लड़के के बाल की कटिंग कर रहा है। ये जो लड़का है --

ये जो रोडवेज है इसमें रेड और वाइट कलर का --

यहाँ एक रोग रुचि रेस्टोरेंट है जो काफी फेमस है इसमें --

मकान का कई प्रकार से डिजाइन किया गया है और इसमें जो कलर है वह काफी मात्रा में यूज़ किया गया है।

कितनी ऊंची है और इसके जो आस-पास का एरिया है वो भी कितने अच्छे प्रकार से बनाया गया है।

यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है और यह जो बिल्डिंग है इसमें कई प्रकार के कलर यूज़ किए गए हैं बीच-बीच में --

किसी का टारक ब्लैक है और ब्लैक में भी दो-तीन कलर की ब्लैक गाड़ियां हैं।

जो काफी ऊंची बनी हुई है जिसमें लोग दवाइयां लेने जाते हैं किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो तो।

पिक्चर है जिसमें कई प्रकार के बैलून लगे हुए हैं। सैंटा क्रॉस है और जो बच्चे हैं --

यहां पर भी एक मैरिज होम है। इसमें जो गेट लगा हुआ है इसपर जो पेंटिंग किया हुआ है व्हाइट कलर से --

यह फूल है। इनका कलर येलो है और इनकी जो डाढ़ी होती है वह हरे कलर की है।

लेकिन इसका जो पैकिंग है वो बहोत अच्छी है। वे कलरफुल --

और इसके गेट बना है। इसका डिजाइनिंग किया हुआ है बहोत ही अच्छे तरीके से। इसके आगे गाड़ियां लगी हुई है ।

चिल्ड्रन सभी प्रकार के बच्चे बैठ सकते हैं और यह दिखने में काफी बेहद खूबसूरत लग रहा है। इसको --

ये रॉयल आर्ट्स फोटो स्टूडियो है।